ये किसी एयरपोर्ट या किसी गवर्नमेंट संस्थान का दृस्य है।

ये एक मॉल है जिसका नाम टेंस है ये रिलायंस का आपको मॉल नज़र आ रहा होगा जोकि छपरा में स्थित है ।

ये किसी नदी या नहर का सीन है।

ड्रेस में नजर आ रहे हैं ऐसा लगता है की दूसरी स्कूल का भी कॉम्पटीशन है।